एक ब्लैक लगा हुआ है एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है बर्ड लिखा हुआ है ।

मम ऊपर आसमान है बड़ा स्कुल से बना हुआ है एक सामने ग्राउंड--

गोल -गोल बना हुआ है चारो तरफ मम घास हु घास लगी है पेड़ लगे हुए है पेड दिख रहे है पुरे में।

गाड़ी लगु हुई है इसमें--

मैन गेट खुला हुआ है एक ब्लैक कलर का गेट हुआ है सामने लाइट लगी है फैन लगा हुआ है पुरे घर में--

एक स्कूल टाइप बना हुआ हैं एक उसमें वेलकम बोर्ड लगा हुआ हैं और लेगे है।

और झंडे लगे हैं और उस के बाद उस में हम्म बेइट से एलोस लिखा हुआ हैं बोर्ड पे सामने झाली बानि हुई हैं बानि उसमे ग्रीन गोल गोल--

बहुत बड़े मंदिर दिख रहा है जहां पर मंदिर खड़ा है वहां पे लाइट टंगे हुए है ब्लू कलर की दिख रहे है लाईटे दिख रहे है |